इसके अलावा बच्चों की फिगर बोहोत ही प्यारा बना हुआ है जिसमें कुछ बच्चे खड़े हैं कुछ खेल रहे हैं और कुछ पढ भी रहे हैं जिससे स्कूल बोहोत ही सामने से प्यारा लग रहा है।

सामने एक बड़ा चबूतरा दिखाई दे रहा है जिसपे कि तीन चार चौकियाँ रखी हुई है छोटी-छोटी।

एक तालाब दिखाई दे रहा है जिसमें चारों तरफ पानी दिखाई दे रहा है और उसमें दो बत्तख --

लकड़ी का एक बड़ा सोफ़ा रखा हुआ है और उसके साथ दो कुर्सियां भी रखी हुई हैं और सोफ़े के पीछे हरी-हरी घास है। दो छोटे पेड़ भी हैं।

यहां छोटे बड़े पत्थल दिखाई दे रहे हैं। उस पत्थर के बीच में थोड़ा-थोड़ा पानी भी है और दूर एक पहाड़ नजर आ रहा है जिसपे कि पेड़ हैं जो हरे भरे दिखाई दे रहे हैं।

एक पानी का बोहोत बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है और उसके पीछे तीन पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और पानी का कलर बोहोत ही प्यारा है। बैंगनी कलर का दिखाई दे रहा है।

यहां एक कई मंजिला बिल्डिंग दिखाई दे रही है जोकि हरे और पीले कलर की है। ये कोई कॉलेज सा लग रहा है।